गेम वगेरा खेलते है।

अच्छी तरीके से दिया जा रहा है और काफी सुंदर है।

इस खेत को काफी अच्छी तरीके से पानी दिया गया है इसलिए ये हरा भरा है।

और काफी बढ़िया लग रहा है ये खेत --

यूनिवर्सिटी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है।

स्टोर है और इस स्टोर के अंदर हमें --

अच्छे है और इस होटल में हमें काफी अच्छी फैसिलिटीया मिलती हैं।

ये एक फ्रूट मार्केट है और इस फ्रूट फ्रूट मार्केट के अंदर हमें बनाना एप्पल --

काफी अच्छी इसमें हमें फैसिलिटीया मिलती हैं और कमरे वगैरह काफी अच्छी तरीके से बनाए गए हैं काफी अच्छा फ्लैट है।

हमें मनी इस एटीएम से निकाल सकते हैं हम अपनी मनी हमें बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं है।

ये एक हॉस्पिटल है। और इस हॉस्पिटल का नाम जे.एच. इंडियन हॉस्पिटल है और यहाँ काफी अच्छा इलाज होता है।

और इस दलदल के आस-पास चारों तरफ पेड़ पौधे है और ये कितना मस्त लग रहा है। नजारा और ऐ दलदल भी कितना अच्छा लग रहा --